यहाँ पे हिरन एक दुसरे के पास खड़े हैं। यहाँ पे बहुत ही सुन्दर लग रहा है। यहां पे बहुत से पते पड़े हैं।

यहां एक लम्बा पिलर दिख रहा है जो दिखने में काफी अच्छा है। यहाँ पे एक आदमी उस पिलर के ऊपर बैठा हुआ है।

यहां पे बहुत से प्रकार के फल रखे हुए हैं जैसे कि लाल सेब अंगूर यहां पे गुलाबी रंग का एक कवर बिछा हुआ है जोकि एक टब भी रखा है जिसमें बेकार फल है।

पास में एक आदमी फल को सही कर रहा है। यहाँ पे एक पिलर भी है जो काफी मोटा है। यहाँ पे एक टोकरी रखी है। जिसमें बेकार फल पड़े हैं।